समान रखा हुआ है और कुछ मशीनें भी रखी है।

पार्क में घास पेड़ और पौधे भी है।

इस चित्र में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

लगा हुआ है और बहुत सारा सामान भी है।

इस चित्र में कुछ मशीनें भी--

स्विमिंग पूल भी इस चित्र में --

है दीवार पर एक बड़ा कांच भी लगा हुआ है।

दिखाएं दे रही है एक व्यक्ति मशीन पर बैठा हुआ है।

यह चित्र एक मॉड्यूलर किचन का है।

इस चित्र में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

घास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर वेंच मार्ट लिखा हुआ हैं और उसके पास एक और--

शोरूम है जो जिस पर इंफिनिटी कार्स लिखा हुआ है।

ओपन जिम खुला हुआ है और पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक कैफे की दुकान है।